इसके ऊपर भी तीन चार बिल्डिंग्स हैं। फ्लैट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं और बिल्डिंग के नीचे --

अं रोड के तरफ और बाहर एक ब्राउन कलर गेट है।

अं बहोत सारे लोग दिख रहे हैं। एक आदमी गेट से बाहर आता दिख रहा है।

दीवार पर बहुत नक्काशी के डिजाइन किए गए हैं।

बाहर में बेसिन दिखाई दे रहा है। इनमें सीढियां हैं। एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक छोटी से बच्ची --

और पीछे बड़े-बड़े मकान दिखाई दे रहें हैं। एक आदमी ले लाल टी-शर्ट में साइकिल पर आता दिखाई दे रहा --

काफी सारे लोगों की भीड़ है इस कमरे में काफ़ी सारे लाइटें लगी हुई हैं।